और यहाँ पर एक अंकल के साइड में यहाँ पर आग बिताने वाला गैस हवो ऐसे देख रहा है।

यहाँ पे कोई चीज़ का फंक्शन पार्टी हो रहा है यहाँ पे लाईट लगा हुआ है एक मंडप की तरफ सजाया गया है अ रेड कलर का लाईट है हरा कलर का लाईट है और हरा कलर से पेंट है।

उ पेड़ बहुत सारे बरका दिख रहा है। के ऊपर भी दिख रहा है।

प्लास्टिक से बांहा गया है। हरा प्लास्टिक से ओर ये ग्रीन प्लास्टिक से बनाया गया है ऊपर घर है घर व्हाइट कलर से पेंट है।

यहाँ पर कोई चीज़ का फंक्शन पार्टी हो रहा है यहाँ पर घर में लाईट बहुत सारा लगा है तीन चार मंजिल का घर है यहाँ पे एक बच्ची यहाँ पे केला का पेड़ है।

यहाँ पे एक मशीन दिख रहा है लिखा हुआ दिख रहा है मोटर साइकिल दिख रहा है एक अंकल दिख रहा है।

रेस्टोरेंट में लगा बोर्ड दिखह रहा है लु-लुड दिख रहा है।

और यहाँ पर गमला है गमला में बोहोत सारे पेड़ लगा हुआ दिखरा है ये सारी ही यहाँ पर नसारी है।

यहाँ पर पोस्टर नर्सरी का है और यहाँ पर आसमान दिखरा है आसमान का कलर नीला है यहाँ पर बहुत बड़का पेड़ है।

अ केला फरा हुआ नहीं दिख रहा है यहां पर जाली की तरह लगा हुआ है वहां पे हरा कुछ दिख रहा है ये साइड --

दिख रहा है आसमान में बादल छाए हुआ हैं आसमान क क कलर नीला दिख रहा है पेड़ पौधा हरा पेड़ पौधा दिख रहे है यहाँं पर स्कूटी लगाए हुआ दिख रहा यहाँं पर ग्लैमबर मोटरसाइकिल लगा हुआ दिख रहा बांस उस दिख रहा --

कुल दिख रहा है यहाँ पे चाचा का लगा हुआ दिख रहा है एक भाई जी जा रहे है वो भी दिख रहा है खुला हुआ दिख रहा है और यहाँ पे झाकी भी कोई चीज का लगा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पर पेड़-पोधा दिख रहा है जो नर्सरी है यहा पर गमला दिख रहा है गमला मे पेड़-पोधा लगा हुआ है गमला यहाँ पे खाली रखा गया है वो पॉलीथिन में भी पेड़-पोधा लगाया गया है।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी बेठे यहाँ पर ये आंटी जी है यहाँ पर हुखी है दीप जल रहा है।

कोई चीज़ यहाँ पर एसे देख रहा है और यहां पर आंटी जी पूजा कर --

यहाँ पर दिख रहा है एक अंकल जी बैठे हुए दिख रहा है एक अंकल जी खड़ा हुआ दिख रहा है र वहां पे रोड है यहाँ पर टावर की तरह--

- पोल खड़ा हुआ है लाइट लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है आस्मां दिख रहे अस का कलर नीला ह--

यहाँ पर फुल से सझाया हुआ एक मंडप की तरह है और लगाया हुआ दिख रहा ह--

घर है घर में लाइट नहीं लगा हुआ है फुल अभी फुल बोहोत सारे रंग बिरंगे दिख रहे है।

वाइट गिट्टी रिपेयर करवाने वाले जो होते है वो सही है यहाँ पे --

मशीन रुमाल माल की तरह सब्ज मूर्ति उत्ती फोटो भी दिख रहे हैं लाइट बर रहा है और यहां पर हुअ भी बहुत प्रकार क दिख रहे ह शीशा लगा हुआ सब् चिज़ दिख रहा है।

एक गजरा है गजरा का छोटा छोटा बीज सा भी है और यहां पर बोरा रख धरा हुआ है ट्रैक्टर के चका दु गो दिख रहा है खेत जोता हुआ है।

रूम में टाइश विश लगा हुआ है यहाँ पर गेट है सीसा वाला चे गेट ऑफ़ है वहा पर कोई भी आदमी वादमी नही दिखरा है।

पिला भी पोल है तीन भी पिला पोल लटका हुआ है वहा पे कोई अछि टांगे वाला--

जो काला कलर के है यहाँ पर गेट भी ऑफ़ है यहाँ पर बजने वाला कोई सी कॉपी कि तरह ही दिखरा है।

कर रही हैं गमला का फूल है।

गमला में धरा हुआ फुल दिख रहा है यहाँ पर और जिस सुना की तरफ पिला से पेंट किया गया है ये सब लईकी मेकअप ऊकप किए हुए ह--

एक गमला में फूल धारा हुआ है यहां पे सोफा लगा हुआ है लाइट्स सब बर रहा है यहां पे पीला कलर का लाइट बर रहा है वाइट कलर का लाइट बर रहा है।

पीला कलर से हरा कलर से और बैठी हुई है जो जूती पहनी हुई है।

यहाँ पुल टंगा हुआ है छ दिवाली के अलावा जो बाहर नहीं निकल रहे लाइट भी लगा हुआ हैं उन लोगो की साइड से दिखरा है।

वहा पर एक मंदिर है यहाँ पे सभी लोग बेठ के लोहा की तरह --

यहाँ पर छेद करने वाला मशीन है जो छेद कर रही है यहाँ पे हथौड़ी है लकड़ी का हथौड़ा है और लोहा का हथौड़ा भी है यहाँ पे एक लोहा हथौड़ा टाइप का डंडा भी है भी है --

यहाँ पर कुर्ता पहने हुए धोती पहने हुए मूर्ती है यहाँ पर एक लाईट लगा हुआ है शीशा के भीतर बंद है यहाँ पे--

अ रूम में एक भी आदमी नही दिख रहा है और दो तीन में भी दिख रहे है।

होले लिखा हुआ है यहाँ पर इधर उधर फोटो वोटो लगा हुआ हैं यहां पे सोफा भी बेठने वाला कुर्सी भी हैं यहां पे हैं फिर--

और ये यहां प हेरोइन क भि कोई फोटो है दू तीन गो यहां पर चिपकाया गया है और यह पेड़ बेड उड वाइट कलर से पेंट किआ गया है इसका बेड --

यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर फोटो कोई चीज़ का है समझ में नही आ रहा है।

हाँ यहाँ पे बोरा ऊरा से कोई चीज़ छिटाया हुआ पेड़ पौधा दिख रहा है यहा पे दिख रहा--

हटाया हुआ है ये पड़ने वाला है --

और खाने वाले सामान से अपन देख रहा लाइट उट बाट रहा लाइट उट देख रहा दो आदमी बइठे जो मोबाइल चला रहे है ।

और वहां पर उम झुमका बुलबुला लटकाया हुआ दिख रहा है बहोत सारी लाइट तो टी यहाँ पे वो वाला हैं जो दिख रहे हैं अभी--